ये इमेज में मुझे एक ताजम हल जैसा छोटा-सा घर दिख रहा है जो ऊपर में ताजमहल जैसा है जिसमे छोटे-छोटे खिड़कियां है।

ये इमेज में मुझे होटल दिख रहा हैं जो वह सजा हुआ है दो पिलरो में हैं इसका जो छज्जा है वो ब्लैक कलर का दिख रहा है इसमें टोकरी--

पहनी हुई है जो हाथ ऊपर कर के है सब बच्चियाँ फिर साइड में एक बॉक्स दिख रहा हैं जो छोटा सा फिर दू--

कलर है फिर आगे में चार बोतले रखी गई जिसमे खाने-पिने की चीजे की तस्वीरें है ब्लैक कलर की फिर लाइफबॉय रखा गया है फिर दो बोतले रखी गई है स्प्रे वाली--